सभी और पीछे बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है।

यहां पर एक तालाब है और तालाब के आस पास सीढ़ियां बनी हुई है ऊपर जाने के लिए।

अ व्हाइट येलो और ग्रीन कलर में ओर सामने टीन सेट लगे हुए हैं टीन सेट के नीचे बहोत सी--

वाइट और ब्लैक कलर का पोस्टर लगे है और इसी तरह का वॉलपेपर लगा है।

यहां पर एक व्हाइट कलर का रूम है जिसकी फ्रंट दीवाल ऑरेंज कलर की हे और यहां पर बहोत सारे --

और एक गोलाकार डिजाइन बनी है जो रेड व्हाइट और ग्रीन कलर की है सामने एक लोहे का गेट लगा है।